कागज हैं बॉक्स हैं पेंसिल हैं रबर हैं कटर हैं और --

और निचे बहुत सारे बूढ़े-बूढ़े आदमी हैं।

बहुत सारे मोटर के पाइप भी है।

फल मिलते हैं यहाँ पे एक डोल भी है।

गैस भी है उसके बगल में एक खुप शुप का भी ठेला है।